जहां काफी ज्यादा बसे गाड़ी--

काफी ज्यादा बेंचेस और टेबल एंड चेयर लगे हैं।

जो पत्थरों का बना है और दोनों साइड से सीढ़ियां लगी है।

जो एक पार्क है पीछे काफी ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं।

पीछे घना जंगल दिख रहा है।

वॉल्स पर पिक्चर्स लगी हुई है एंड कुछ लिखा हुआ है।

एक नाव चल रही है जिस पर काफी लोग बैठे हैं।

यहां पर एक शॉप दिखाई गई है।

दैट कुछ अदर सामान भी है।

जो काफी बड़ा है। जहां अलग-अलग तरह के पेड़ और फूल लगे हुए हैं एंड एक रास्ता भी दिख रहा है।

एक मैदान में बैठे हुए हैं।

जहां काफी ज्यादा बर्फ पड़ी है।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

सबसे ज्यादा बाईके खड़ी हुई दिख रही है।

एक पौड़ी दिख रही है।

पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ लगे हैं जो काफी सुंदर लग रहे है।

एक टी_वी लगा हुआ है।

काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है।

और यहां की गलियां काफी खराब हैं।

यहां पर एक ढाबा दिखाया गया है जो काफी सुंदर है और छोटा सा है जिसके पीछे --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

यहां पर मुझे --

मिरर हंड्रेड परसेंट टेल दिखाया गया है।

ऑफिस दिख रहा है।

दिख रहा है जहां पर--

काफी ज्यादा लोग चल रहे हैं।